उस तरफ भी बहुत सारे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है उस साइड टेम्पो दिख रहे है यहा पर से--

पीछे व्हाईट व्हाईट सा दिखाई दे रहा है एक साइड मे एक व्यक्ति वहा खड़ा हुआ है यहा पर --

मेन गेट लगा हुआ है मेन गेट टेंपू दिख रहा है गाड़ीया दिख रही है। कार जा रही है।

आगे जाकर एक घर बना हुआ है ग्राउंड है।